दिखाई दे रही है उसमें काफी सारी लाइटिंग जल रही है आस-पास कुछ रोड भी नजर आ रहा है यह पे काफी सारे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर एक बहोत बड़ा हॉल दिखाई दे रहा हैं इस हॉल मे काफी सारी लाइटिंग भी जल रही हैं अ कुछ ब्लैक कलर के पंपकिन दिखाई दे रहे हैं।

अअ रोड भी दिखाई दे रहा है आस पास काफी बड़ा पहाड़ बना हुआ है जो की पत्थर का दिखाई दे रहा है यहां पर कुछ धूप भी आती हुई नजर आ--

अअअ कुछ परदे लगे हुए हैं कत्थई कलर के कुछ वाइट कलर के लगे हुए हैं यहाँ पर कुछ पोस्टर भी टंगे हुए हैं यहाँ पर टाइल्स भी लगी हुई हैं कत्थई वाइट कलर के--

यहाँ पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो कि ऑरेंज और हरे कलर से पेंट की गई हैं।